सजी हुई झालर फूलो की झालर ।

उनके पीछे येलो कलर की बसस खड़ी हुई हैं जो कि पांच बसस है ।

शॉप नजर आ रही है अभी बड़ा-सा पेड़ नजर आ रहा है।

और ये देखने में काफी सुन्दर और साफ-सुथरा --

ये दिवार पे व्हाइट कलर पुता हुआ --

ब्लैक चांदी का गेट नजर आ रहा है। गुम्बदे नजर आ रही है।

कुछ देख रहे है और कुछ एक स्टेज बना हुआ है।

नजर आ रहा है लेकिन कुछ मेडिसिन कुछ लिक्विड --

और एक मका पक्का मकान भी बना हुआ है ।